ये चर्च के बाहर का है यहाँ पर बहुत ज्यादा पब्लिक है लाइटे जल रही है।

--पत्थरों की कुछ इमारते उमारते टाइप बना रखी है।

--तालाब है उसके आस पास रोड़ बनाए है और रोड़ पर से गड़िया चल रही है एक व्हाइट कलर की फॉर व्हीलर जा रही है यहाँ से--

ये मूर्ति है जो इनकी जैन की मूर्ति रखी है गोल्डन कलर की मूर्ति है।

ये एक घर बन रहा है जोकि जिसमें लगी है यहाँ पर पाइप वगैरह पड़े है टंकी रखी है यहाँ गाड़ियां खड़ी हैं।

उसके अंदर का हैं यहाँ पे बहुत सारी चेयर लगी हुई हैं और चेयरो पर नंबर लिखे हैं।

आस-पास से उन दीवारों पे ग्रीन और व्हाइट कलर की अंदर बड़ी -सी मटकी बनी हुई है पेड़ लगे हुये हैं।